भक्त दुर्गा माता जी के भक्त आए आते हैं और यहां पर दान--

यह बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं और--

वह से व्यक्ती काम करके अपने परिवार को चलाते है।

सभी बच्चे एक दूसरे को रंग लगाते हैं और यहां पर फंक्शन भी होता है यहां पर टीचर बच्चों को समझाती हैं।

यह एक घर का छोटा सा कमरा है। इस कमरे में--

यह एक मार्केट का सीन है इस मार्केट के सीन में बहोत सारी दुकानें है जनरल स्टोर है।

यहां पर ट्रैक्टर जारा जैसे धान गेहूं को भी--

यह एक तालाब है इस तालाब में बहुत सारी मछलियों को पाला जाता है।

कॉफी की दुकान है यहां पर बहुत सारे कापी किताबें मिलती हैं।

इस गार्डन के चारो तरफ बहोत बड़े बड़े पेड़ पोधै हैं गार्डन में बैठने के लिए सीडी भी बनाई गई है।

हर तरह की सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। हर तरह के सब्जेक्ट को एक एक टीचर है।

यहां एक प्ले ग्राउंड है इस प्ले ग्राउंड मे--

कोई भी नहीं जाता है जब गेम प्ले होता है।

बहुत तरीको के पढ़ाई करते है वर्क करते है इनसे उन्हे बहोत से तरीको के ज्ञान होता है।

दूध नहीं अमृत बोला जाता है इस गाय के दूध की बहोत ही पूजा की जाती है।

पढ़ाई करते हैं इस कॉलेज मे बहोत से टीचर है।